चित्र में हम एक आदमी को पानी पिता हुआ --

अ जिचे देख कल लगता है की यह एक मछली मार्केट की हे।